ये जो दृश्य है पेट्रोलपंप का है हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के नाम से ये पेट्रोलपंप है और ये कंपनी की खुद की अपनी पेट्रोलपंप है।

कपड़े की खरीदारी के लिएऔर दुकान में सीसीटी वी कैमरा भी है जिससे ये पता चल पा रहा है की --